जय श्री राम लिखा हुआ है और बगल में लॉज जैसा दिख रहा है है होटल ।

ये पूरा जो है अ क्यारी बना हुआ है गमले जैसे है हर गमले में अलग -अलग तरह के फूल है।

एक घर दिख रहा है और बिल्डिंग जैसा दिख रहा है क्लाइमेट दिख रहा है।

ए ऑफिस जैसा दिख रहा है सामने एक लोग टेबल के साथ में बैठे हैं कुछ लिख रहे हैं ।

पेहने हुए वहा बना है खडा होने का --

नाशपत्ती ओ सॉरी अ अ दिखाई दे रहा है क्या बोलते हैं उसको --

कई कई फ्लोर पे और उधर जो है इसका ही बाग है उस साइड --

और उसके पीछे सीढ़ी एक खड़ी हुई है दीवार पर और साइड में एक गार्डन के पास में एक टू व्हीलर गाड़ी है।

और उसके बगल में जो है स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है और --

सामने बिल्कुल झोपड़ी जैसी दिख रही है उस पर पटरा पड़ा हुआ है ।